यहां पे स्कूल है स्कूल के बाहर फील्ड है फील्ड में पेड़ बहोत अच्छा हरा भरा है।

ए_टी_एम के गेट पर शीशे की केवाड़ी लगा हुआ है एक मकान है यहां पे बहोत अच्छा लग रहा है ए_टी_एम है एक मकान है यहां पर--

पीछे टी_वी दीवार पे लगा हुआ है बहुत ज्यादा लाइट लगा हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में बहुत अच्छा है।

पीछे साइड में पेड़ है हरा-भरा है एक बाइक लगा हुआ है मशीन है छड़ है बालू है गिट्टी है बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा है।

तीन बेडरूम बहुत अच्छा लग रहा है देखने में बेडरूम बहुत अच्छा है बेडरूम के बाहर एक पर्दा है।

स्टॉल लक्खा हुआ है दुकान में लाइट जल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है देखने में बहुत अच्छा दुकान है।

यहां पर एक ऑफिस ऑफिस के बाहर तीन पेड़ हरे भरे लच्छे लक्खे हैं गमले में--

यहां पर एक महजिद है महजिद में चार पांच आदमीन हैं महजिद में सब नमाज पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है देखने में।

यहां पर गुप्ता सोलर इलेक्ट्रॉनिक हाउस है बहुत अच्छा लग रहा है सोलर बहुत अच्छा दुकान है बहुत अच्छा लग रहा है यहां पर गुप्ता सोलर --

यहां पर एक मकान है मकान उज्जर लाल से पेंट किया गया है मकान के बाहर से डड्डी घेरा गया है बाहर अशोक के पेड़ हैं हरे भरे बहुत अच्छा लग रहा है देखने में।

बहोत अच्छा मकान है मकान के बाहर फील्ड है बाहर कच्चे सड़क है बहोत अच्छा लग रहा है देखने में मकान बहोत अच्छा है लाल उजाला से पेंट है मकान में खिड़की है।

यहाँ पर मंदिर है मंदिर में बहुत पेर है आदमीन है मंदिर में बहुत अच्छा लग रहा है देखने में मंदिर के बाहर से हरा-भरा पेर है बहुत अच्छा लग रहा है देखने में।